ये एक नेचर दिख रहा है और ऊपर क्लाउड दिख रहे है निचे एक नदी दिख रही है एक बड़े पत्थरो का

बिकास दिसत आहे एक दुकान दिसत आहे त्या पाहेर एक मुलगी ओबी आहे पूल दिसत आहे त्या लाइट्स दिसत आहे।

और ब्लैक कलर ईस टाइल्स है सफ़ेद कलर कि दिवार है निचे ऊपर की शैडो नीचे गिर रही हैं।

और उसपे सी जी जीरो फोर एम डी सेवेन नाइन सेवेन थ्री --

ऊपर डाला हुआ दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ माउंटेन भी दिखाई दे रहे है।

पत्थर पे से गिरते हुए दिख रहा है बहुत सुन्दर ए नेचर है।